हम ये भी यहाँ देख सकते हैं की नीचे की तरफ काफी सारे ग्रीन घासें वागेरा उगी हुई हैं और काफी प्यारा सा ये व्यू आ रहा है।

इसके अंदर की तरफ एक रैग लगा हुआ है वाइट कलर का जिसमें कुछ प्रोडक्ट वगैरा सामान वगैरा रखे हुए है और नीचे हमे काउंटर देखने को मिल रहा है पूरा रेड कलर का उसमें कुछ वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ है और वहाँ पैर कुछ कट्टे रखे --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं । यहाँ पे हमें एक बड़ा सा रूम देखने को मिल रहा है रूम में दोनों तरफ रैक्स बने हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पर कुछ प्रोटिन्स वगेरा के कुछ डब्बे वगेरा रखे हुए हैं।

मे हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें नीचे काफी बड़ा सा एक ग्राउंड देखने को मिल रहा है।

चे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो दिवारे नजर आ रही हैं एक तरफ तोह बाउंड्री है लेफ्ट हैण्ड साइड में वहाँ पे लाइट लगी हुई है तीन खंभे में और न् जाली लगा के रखी है ऊंची-ऊंची दिवार के साथ और यहाँ पे खेलने के लिए --